दुकान में प्लास्टिक के डब्बे बर्तन ब्रश और अन्य दैनिक उपयोग की चीजें भरी हुई दिखाई दे रही हैं।

सामने लकड़ी के चारपाई और कुर्सियां रखी हुई है।

यह एक दुकान नजर आ रही है काउंटर के पास कई प्रकार के पालतू जानवरों के खाने के पैकेट और अन्य प्रोडक्ट रखे हुए दिख रहे है।

काच की अलमारी में विभिन्न एसेसरीज दवाइयां और ग्रुमिंग प्रोडक्ट्स रखे गए हैं।

यह एक रिसेप्शन क्षेत्र नजर आ रहा है जिसका नाम क्रिस्टा आई_बी_एफ फर्टिलिटि सेन्टर है।

एक हरा पीला ऑटो रिक्शा खड़ा हुआ दिख रहा है।

दुकान के बाहर बड़े अनाज के बोरे हैं दुकान के आगे एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

दुकान के पीछे एक अदूरी बनी हुई इमारत दिखाई दे रही है।

यह एक सजाया हुआ रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान दिखाई दे रही है जिसका नाम रूप कलेक्शन है।

एक युवक ब्लेजर शर्ट पैंट और स्पोर्ट्स शूज में कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है।

बैकग्राउंड में सजे हुए टेबल और कुर्सियां नजर आ रही हैं जिन पर गुलाबी और सफेद कपड़े लगे हुए हैं।

मूर्ति एक नीले रंग के पत्थर नुमा आधार पर स्थित दिखाई दे रही है।

सड़क के किनारो पर घास और झाड़ियां ऊगी हुई दिखाई दे रही है।

दीवार पर एक टी_वी लगा हुआ है जिसके पीछे बैकग्राउंड में बैंगनी लाइटिंग दी गई है।

सामने एक आकर्षण डिजाइन वाला काउंटर रखा दिख रहा है।

रॉयल एनफील्ड का नाम बड़े और चमकदार अक्षरों में शोरुम के उपर लिखा हुआ है।

दीवारों पर बिजली की तार और एयर कंडीशनर की यूनिट्स भी लगी हुई दिख रही है।

मकान के ऊपर बल्बों की एक पंक्ति टंगी हुई नजर आ रही है।

यह एक मंदिर नजर आ रहा है मंदिर की संरचना सरल और शांतिपूर्ण है।

दीवार पर एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है।

पूल पर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं नहर के दोनों किनारों पर सीमेंट की दीवारें बनी हुई है।

यह एक सुधा पार्लर नामक डेयरी उत्पादों की दुकान दिखाई दे रही है।

उसकी गर्दन के चारों ओर एक काले रंग का बारबर कैप लपेटा गया है।

एक कच्ची और पक्की सड़क दिखाई दे रही है जिस पर एक सफेद जीप खड़ी है।

कुछ लोग प्लेट में मिठाइयां प्रसाद बांटते हुए दिख रहे हैं।

एक लाल रंग की महिंद्रा थार जीप खड़ी नजर आ रही है।

वाहन के पहियों पर व्हील एलाइनमेंट उपकरण लगे हुए दिख रहे हैं।

अग्रभाग में एक बालकनी की रेलिंग दिखाई दे रही है।

सूर्य हल्की नारंगी रोशनी के साथ आकाश में दिखाई दे रहा है।